हम लोग अपना बॉडी वार्म अप के लिए तैयार है इसने वाइट टीशर्ट पहन रखा है और एक ने --

ग्रीनरी है कुछ पौधे हैं और ये --

पक्का नहीं कह सकता कि यह दिल्ली के डियर पार्क का फोटो है पर इसमें काफी हिरण दिख रहे हैं जो चार हिरन है वो कुछ खा रहे हैं।